जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं हमें यहां पे प्लेग्राउंड दिख रहा है।

इसमें हरे रंग का स्लाइड है।

आगे दो औरत खड़ी है।

एक ने उदाहरण पहना है।

उसने पीला रंग पहना है।

जैसा इस पिक्चर में देख सक--

बहोत सारे लव बर्ड्स दिख रहे हैं।

पीछे एक गाड़ी खड़ी है।

हरे रंग की दीवाल है।

पेन का बॉक्स दिख रहा है।

काले रंग की प्लेट है।

सफेद रंग का चावल है।

दो तरह का सांभर है।

उसके ऊपर दो लकड़ी है।

जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं हमें यहां पे काले रंग की गाड़ी दिख रही --

नीले रंग की घड़ी दिख रही है।

अपने हाथ ऊपर उठाए है।

लाल रंग की जमीन दिख रही है।

एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है।

और सफेद आसमान दिख रहा है।

पिंक कलर का कपड़ा पहना है।

एक दीवाल दिख रही है।

और हम सीधे हाथ तरफ एक मंदिर देख सकते हैं।

बहुत सारे झाड़ देख सकते हैं।

जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं यहां पे हमें लाल रंग का घर दिख रहा है।

एक झाड़ दिख रहा है।

तीन दरीचे दिख रहे हैं।

यहां पे हमे एक कार दिख रही है।

आगे में एक कार खड़ी है।

एक और कार दिख रही हमें वाइट रंग की।

जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं।

जहा पे दो स्टूल है।

ऊपर में एक फ्लोर है।

लाल रंग की दीवाल दिख रही है।

पीछे एक आदमी दिख रहा है।

और एक हद दिख रहा है।

तीन लोग जा रहे हैं।

रंग बिरंगी मिठाईयां दिख रही है।

राइट हैंड साइड में डोर है।

तो ऊपर जा रही है।

हरे रंग की मैट में बैठे हैं।

जैसे इस पिक्चर में देख सकते है यहां पे हमे एक जिम दिख रही है।

एक हरे रंग का झाड़ है।

लाल रंग की जमीन है।

उपर में सभी कैरियर के सेट है यहां पे।

कार के नीचे लाइट है।

आगे हरे रंग के झाड़ हैं।

आगे मीटर दिख रहा है हमें।

एक कार वॉशर दिख रहा है।

कार का शटर ओपन है।

छत के ऊपर लाइट है।

सीधे हाथ तरफ एक बिल्डिंग है।

और बहोत सारे लोग डांस कर--

बुक शॉप दिख रही है।

हरे रंग का मैट है।

ऑरेंज रंग की छत है।

बैठने के लिए सीट है।

खेलने के लिए शीशो है।

एक झोपड़ी है यहां पे।

मिट्टी दिख रही है हमें।

और बंबू दिख रहे हैं।

एक बनाना ट्री दिख रहा है हमें।

एक रूम दिख रहा है।

डाइनिंग टेबल है यहां पे।

दीवार पर लाइट ऑन है।

छत पर लाइट ऑन है।

अंदर एक कार खड़ी है।

जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं --

एक आदमी दिख रहा है।

एक पानी का कैन दिख रहा है।

यहां पे हमें एक ऑफिस दिख रहा है।

दो आदमी खड़े हैं यहां पे।

जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं।

बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

हरे रंग के झाड़ हैं।

यहां पे हमें गार्डन दिख रहा--

बहोत सारे लोग बैठे हैं।

एक आदमी चल के जा रहा है।